और उसके पास में ही और एक सफ़ेद गाड़ी दिखाई दे--

यहाँ पर हम देख सकते है की एक दीवाल दिख रहे हैं उसमे दो मीटर लगे हुए भी नज़र आ रहे है।

और केसरिया रंग से हिंदी में कुछ लिखा गया भी नज़र आ रहा है और निचे भी इंग्लिश लिखा गया दिखा रहा है और एक गाड़ी खाड़ी हुई--

दूर पर हम देख सकते है की छोटे-छोटे पेड़ नज़र आ रहे है और बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है और एक पहाड़ भी नज़र आ--

अनिशा हम देख सकते है की पेड़ दिखाई दे रहा है।

और वो कुछ कहते हुए नज़र आ रहे है हम देख सकते है की वो काले कटोरी दिखाई दे रहे है और वो छाए के दो कप नज़र आ रहे है और एक पानी की बॉटल दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हम देख सकते है की नीच हमें घास दिखाई दे रही है और बैठने के लिए एक टेबल नज़र आ रहे है बड़े बड़े नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बेल जैसी चीज़े लगी हुई नज़र आ रही है और ऊपर हम देख सकते है की खुला आकाश भी दिखाई--

हाथ मे उन्होंने चूड़ी पहनी हुई नज़र आ रही है पीछे हम देख सकते है की एक लाल बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है और हिंदी में--

यहाँ पर हम देख सकते है की बड़ी ईमारत दिखाई दे रही है उसके अन्दर एक गेट नज़र आ रहा है वहा पे स्कूटी और एक व्यक्ति खड़ा हुआ नज़र आ रहा है उसके सामने ही--

जिसमे कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे है और हम सफ़ेद पर्दा भी लगा हुआ देख सकते है खिड़की के पास--

यहाँ पर हम देख सकते है की दूर-दूर तक बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

पानी के अन्दर पत्थर भी नज़र आ रहे है छोटे-छोटे पेड़ नज़र आ रहे है कोने में सूखे पेड़ दिखाई दे रहे है और हम देख सकते है दूर पे एक बड़ा सा खम्भा दिखाई दे रहा है लाइट का--

उसके आस-पास हम देख सकते है की बड़ी-बड़ी मटटी के पहाड़ नज़र आ रहे है।